यहा पर बहुत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

गैलरी में बहुत सारे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं छोटे बच्चे कुछ बेंच पर बना रहे दिखाई दे रहे हैं।

इसका लोगो रेड कलर से दिखाई दे रहा है इसके यहां पर लाइट भी दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक ऑफिस नजर आ रहा है यहां पर बहोत लंबी गैलरी भी दिखाई दे रही है।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

मेरे सामने एक अस्पताल दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारी लाइटिंग भी की हुई दिखाई दे रही है।

परियों का क्लास चल रहीं हैं यहाँ पर--

ये सामने एक गोदरेज का शोरूम दिखाई दे रहा है।

गाड़ी की शॉप दिखाई दे रही है इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वहां पर बहुत सारे तारें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहोत सारे पुतले भी दिखाई दे रहे हैं पुतलों को बहोत सारी ड्रेसे भी पहनाई--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

शॉप दिखाई दे रही है शॉप पर बहोत सारा इलेक्ट्रॉनिक समान भी दिखाई दे रहा है।

पर बहोत सारी गरील भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक स्टोर नजर आ रहा है स्टोर पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहां पर बहुत सारी फ्रूटी भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बीच में एक रोड भी दिखाई दे रा--

यहां पर कुछ लाइटिंग वगैरा भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहोत सारी मेजे भी रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग रेड कलर की दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर शेर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर दिखाई दे रहा है यहां पर एक भगवान की मूर्ति भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर टेंट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।